ऊपर दिखाए गए चित्र में एक दुकान नजर आ रहा है।

कुछ सामान बाहर लटके हुए हैं।

कुछ गाडियाँ नजर आ रही है।

पीछे की और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में एक बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा है।

खंबे के सामने एक इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा है।

वॉल में एक ऐ_सी लगा हुआ दिख रहा है।

एक आदमी हाथ में पेपर लिए खड़ा हुआ है।

सामने कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

ऊपर के तरफ कुछ फल लटके हुए हैं।

एक इंसान बैग लेकर खड़ा हुआ दिख रहा है।

विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिख रहे है।

लोगों ने हाथ पे पोस्टर लिया हुआ है।

ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

पाल में एक सुंदर सा चित्र बनाया हुआ है।

एक नाव दिख रहा है।

दो लोग पानी में और एक इंसान नाव के ऊपर खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक गेट नजर आ रहा है।

कुछ लाइट और फैन दिख रहे है।

एक इंसान हाथ में झाड़ू लिए बैठा हुआ है।

इस चित्र में विभिन्न प्रकार के खाने के सामान दिख रहे हैं।

विभिन्न रंग के जूस से भरे हुए गिलास नजर आ रहे हैं ।

बच्चे ने सफेद और नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

ऊपर दिए गए चित्र में एक बगीचा नजर आ रहा है।

सामने एक बस नजर आ रहा है।

बस ऑरेंज कलर का दिख रहा है।

पीछे कुछ स्कूटी नजर आ रही है।

रास्ते पे चलते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं।

बहोत सारे बेंच और डेस्क रखे हुए हैं।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

ऊपर की तरफ एक हरे रंग का कपड़ा टंगा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में रंग बिरंगी फूलों की माला दिखाई गई है।

दो पीले रंग के माला दिख रहे हैं।

दुकान के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहां पे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी लिखा हुआ है।

फूलों का रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाया गया है।

एक बिजली का खंबा नजर आ रहा है।

बहुत सारे सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

खिड़किया खुली हुई नजर आ रही है।